इस फोटो में एक रात का दृश्य दिखाई गया है जी हम देख सकते हैं कि पार्क में कुछ लगी हुई कुर्सियों की फोटो खींची हुई है।

शिष्य है जो पादरी के सामने है ईसा मसीह की मूर्ति को प्लस का निशान लेके जा रहे है तथा वो वहीं उनके पीछे बहोत सारे लोग है जो --

यें स्पेशल समान रखा हुआ है तथा पीछे की हम देख सकते है कि दवाईयां और इत्ते यहां पर एक जो व्यक व्यक्ति है जो मेडिकल टेबल में बैठा हुआ है जो सेल कर रहा है जो दवाईयां बेच रहा है।

तथा लाइट की खंभे भी लगे और उसके पीछे इधर में हमें शहर दिखाई दे रहे है वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है इसे यहां मानो लगता है ये शहर के किनारे है।

और पीछे हम कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है।

पार्क में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह पेड़ नीम के पेड़ है तथा हम यहां पर पार्क में बहुत सारी घास उगी हुई है जो छोटे पौधे भी और हैं।

ये गेट की तरफ रोशनी हो रही है।

प्रधानमंत्री कुछ मिठाई तोहफे ले के आई हैं बच्चों के लिए सामने पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो केक कटवा रहे अपने बच्चों से।

तब हम देख सकते है लगभग यहां से म दस से पंद्रह दुकान है।

बाहर की तरफ बहोत सारी महिलाएं पुरुष खड़े हैं जो दूध दही खरीदने के लिए आईं हैं।

ये बहुत सारे कपड़ों की फोटो दिखाई दे जिसमें अलग अलग कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं लाल येलो --

जहां में हम देख सकते हैं महिलाओं के बहोत सारे कपड़े मिलते हैं तथा इस दुकान में हमें सामने महिलाओं के डमी दिखाई दे रहे जिसमें महिलाओं के कपड़े पहनाए हुए हैं।

और साथ में हमें कुछ गाड़ियों की मशीन तथा पेट्रोल के लिए डालने वाले नल को--

विथ द मोटर्स आदि रखी हुई है देख सकते है हम।

और हम देख सकते हैं उसके गुंबद बना हुआ है तथा पीछे की तरफ हम देख रहे मक्का मदीना के मंदिर की फोटो लगी हुई है दीवारों पर।

गोखटाई की गई है तथा पीछे की तरफ देखने पर हमें चलता है कि बहोत बड़ी बिल्डिंग है जोकि डूंगर महाविद्यालय की है सामने महाराजा गंगा सिंह की --